यहाँ पे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं यहाँ पे कुछ जगह पे ऑरेंज कलर की रोड भी दिखाई दे रही हैं ऊपर यह आसमान के साथ-साथ पहाड़ भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहें जैसे तीन पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

स्कूल के गेट के सामने खड़े हुए हैं जो गेट हैं वह लोहे का बना हुआ है बहुत बड़ा गेट है लोहे का जो गेट है उसका कलर ब्लू कलर है उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ है गेट में कुछ पोस्टर लगे हुए हैं उसमें वह कुछ लिखा हुआ है लड़का उस पोस्टर को पढ़ा रहा है।